बोहत लम्बे-लम्बे पेड़ लगे हुए है पेड़ो के ऊपर कलर किया गया है रेड येलो एंड वाइट एंड ग्रीन कलर किया गया है एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका कलर क्रीम है।

कुछ लोग यहाँ से वहाँ चल फिर रहें हैं सामने की तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वाइट कलर की बिल्डिंग्स के ऊपर टंकियां रखी हुई है।

बहुत ही विशाल पहाड़ नज़र आ रहा है इसके ऊपर बहुत सारे पेड़ लगे हुए है कुछ पेड़ सूख रहे है कुछ पेड़ बहुत ही हरे-भरे है।

बहुत बड़े-बड़े पहाड़ है ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है पानी इतना तेज बहाव से है कि उसका कलर सफेद नज़र आ रहा है।